रस्सी भी दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें खिड़कियां भी दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें एसी भी दिखाई दे रही है यहाँ पे पानी की बोतल भी दिखाई दे रही है एक कांच दिखाई दे रहा है।

और सड़क भी दिखाई दे रही है जिसपे सफ़ेद रंग की पट्टी दिखाई दे रही है और गेट के बाहर कुछ लिखा भी दिखाई दे रहा है।

घास भी दिखाई रहे है यहा पर बडे - बडे झाड पौधे भी दिखाई दे रहे है खुला आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें गेट दिखाई दे रहा है।

हमें नीला कलर का ड्रम दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें चैनल गेट दिखाई दे रहा है | यहाँ पे हमें फैन

यहाँ पर एक बेंच दिखाई दे रही है जिसका बैठने की बेंच दिखाई दे रही है नीचे का सरफेस ब्लैक और व्हाइट दिखाई दे रहा है।

घड़ी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे एक पुरुष बैठा दिखाई दे रहा है वहां से एक आदमी चलता हुआ आ रहा है यहाँ पे।

इस तस्वीर में हम देख सकते है यहाँ पे हमे एक सा बना दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमे बत्तख बने हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे हमे पानी भी दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ लकड़ियों से बना हुआ बेंचेस कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे हमें एक लाइट भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे छत पे हमें एक सिल्वर कलर की टेंट दिखाई दे रही है और --

तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक रोड दिखाई दे रही है| उसके आसपास हमें मोटर साइकिल दिखाई दे रही है जिसपे लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं| यहाँ पे हमें कुछ साइकल्स भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमें --

तस्वीर में जैसा हम देख सकते हैं पानी की टंकी दिखाई दे रही है यहां पर हमें उसके आस-पास झाड़ पौधे दिखाई दे रही है यहां पर खुला आसमान दिखाई दे रहा है ऊपर चढ़ने के लिए सीडिया दिखाई दे रही है ।